तंबू गाड़े हुए है और वही जो है ये अपना जिंदगी जी --

मिस्त्री जो है अब वो फूली इंजीनियरिंग इस नक्सा के तहत जो है यह घर को तैयार करते है और ये घर बोहत --

ये कंचन फैमिली रेस्टोरेंट है ये कंचन --